कि वो पकड़े हुआ खड़ा रखवा है बगल में एक दुकान है दुकान में कुछ सीढ़िया दिखाई--

एक बासेस स्टैंड है बासेस स्टैंड में एक कार खड़ी हुई है एक ट्राली खड़ी हुई है।

एक व्यक्ति जा रहा है एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है और पीछे एक पेड़ दिखाई दे रहा है और दमाल की रोड है।